जिसमें काफी सारे खिड़कियां बनी हुई है।

ये एक बहुत सुंदर व्यू है।

ये एक बड़ी सी शॉप है।

हॉस्पिटल में काफी सारा सामान रखा है।

और अंदर दीवार में आईसक्रीम बनी हुई है।

जिसने एक के उपर एस_बी_आई का बोर्ड लगा है।

जिसमें काफी सारी मशीने हैं काफी सारे लोग पेट्रोल भरा रहे हैं जिसमें एक बाइक वाला है।

एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे पापा विस्की लिखा हुआ है।